और ब्लैंकेट भी रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में हमें एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सरिता रेडिमेड एंड सूट हाउस ।

और उनके रिजल्ट के प्रतिशत दिखाई दे रहें हैं।

इस पिक्चर में हमें एक एक्टिवा की गाड़ियों का शोरूम दिखाई दे रहा है एक गाड़ी काले --